और पीले रंग के गेंदे के फूल खिले है।

जिस पर कुछ मूर्तियां हमें नजर आ रही है।

ऊपर कुछ खिड़कियां नजर आ रही है।

जिसका रंग लाल दिखाई दे रहा है।

बहोत से बड़े पेड़ भी हमें नजर आ--

दो लोगों को बैठे हुए देख पा रहे हैं।

साथ ही बहोत से लोग यहां पर स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं।

हम एक बड़े से मकान को देख पा रहे हैं।

बाहर एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा भी है।

सामने कुछ चप्पल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़े से शॉपिंग मॉल को--

सामने एक लिफ्ट जाती हुई दिख रही है।

साथ ही हम यहां कुछ पोस्टर्स देख पा रहे है।

और सफेद रंग की प्लेटे नजर आ रही है।

दीवार पर एक आर_ओ लगा हुआ नजर आ रहा है।

खिड़की दरवाजों को देख रहें हैं।

कुछ पेड़ भी हम देख पा रहे--

दीवार पर एक बहोत ही सुंदर सा चित्र बना हुआ--

सामने कुछ रैक बने हम देख पा रहे हैं।

सामने प्याज की खेती की गई है।

प्याज के फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक शेड बना हुआ नजर आ रहा है।

लोहे की रेलिंग से घिराव किया गया है।

सामने एक कच्चा मकान नजर आ रहा है।

इनके पीछे नजर आ रहा है।

कुछ लोग हमें यहां पर एक्सरसाइज करते नजर आ रहे--

सामने हमें एक नीले रंग का डब्बा दिखाई दे रहा--

इन रैक पर हम कुछ किताबों को देख रहे हैं।